घर दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है येल्लो कलर का है। बगल में एक और स्कूटी दिखाई दे रही है सीढ़ी दिखाई दे रही है।

इसमें काफी ढेर सारी चॉकलेट्स भी रखी गयी हैं।

ये एक बिल्डिंग है आपलोग देख देखिये --

ये पूरा मिट्टी का शॉप है जहां पर वो काफी खूबसूरती से चीजें रक्खी गयी हैं।

देखिये यहाँ पे घर हैं।

ये लम्बी टावर है आप लोग देखिये आप लोग देख सकते हैं।

और इसके सामने ऑटो दिख रही हैं काफी लोग दिख रहे है। बाइक भी दिख रही हैं। दुकाने खुली हुई हैं यहाँ की।

और प्लेट्स में लोग खाने भी खा के रखें हैं।

इमेज आप लोगो को सामने शेयर किया गया है जिसमे एक छोटा सा बच्चा --

काफी अच्छे अच्छे रिजाइन्स की भी यहाँ पे रखी गई हैं पावदान।

और दुकान दो फ्लोर का है।

जमसोना रोड है जोकि बोर्ड भी लगा हुआ है रोड के बगल में।